ली गई तस्वीर में हमें सामने एक चर्च दिखाई दे रहा है जिस पर हमें क्रिश्चियन का होली साइन भी बना हुआ नज़र आ रह है।

वही हम यहाँ पर और भी बहुत सारे दूर-दूर तक घर देख पा रहे है आस-पास हमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

दी गई इस तस्वीर में हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है जो कि देखने में काफ़ी बड़ा और सुंदर लग रहा है हमें इस पर क्रिश्चंस का होली साइन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ये इस तस्वीर में हमें एक कैफे दिखाई दे रहा है जहां पर हमें फास्टफूड मिलते है।